कूड़ा कचरा भी दिख रहा है।

इस मज्जिद में पांच आदमी दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं।

और इस तस्वीर मे पांच आदमी दिखाई दे रहे हैं।

वो इस तस्वीर में चश्मा बेल्ट माक्स भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में चार फ्रिज दिख रहे है।

इस तस्वीर में हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे है।

इस तस्वीर में एक एम_सी_बी नजर आ रही है।

बॉक्स से ऊपर एक एक टेप वाली भी रस्सी नजर आ रही है।

गमला के ऊपर एक ग्रीन चादर भी दिख रही है।

दो औरतें भी दिख रही है।

इस तस्वीर में एक बहोत अच्छी सजावट दिख रही है।

और बहुत सारी बहुत सारी मैट भी दिख रही है।

लोहे से बने टेंट के पाइप भी नजर आ रहे है।

एक काली भी दिख रहा है।

और इस तस्वीर में एक कार भी दिखाई दे रही है।

एक लोहे से बनी जाली भी नजर आ रही है।

और दही भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में बहुत सारे मूर्ति नजर आ रही हैं।

तस्वीर कांच की भी नजर आ रही है।

पुल के नीचे कुछ बल्ली दिख रही है।

बहुत बड़ा कांच का गेट भी दिख रहा है।

चटाई भी नजर आ रही है और एक्टिवा भी दिख रही है।